वहां पे पर्दे टंगे हुए हैं ऊपर से दो लाइटे जल रही है।

नदी टाइप में कुछ कुछ में ताला भी लगा हुआ है।

यहां पे एक टेबल रखा गया टेबल के नीचे चार पउवे रखा गया --

बैठक में एक दो तीन चार पांच छे--

ट्रेन के ऊपर से थोड़ी तार भी जल रही हैं। ट्रेन के बगल में बाथरूम लगी हुई है।

बगल में एक औरत है जो कि बच्चों के लिए भी खड़ा है।

बहुत सारे माले से सजाया गया है।

यहां पर लौंग का तेल बहोत बढ़िया से डिजाइन से बनाया गया है।

यहां पे देखिए बस खड़ा है उस के नीचे से आगे आ रही है।